इसमें साइकिलों का कलर ब्लैक कलर का है साइिकलों पर पन्नी भी चढ़ी हुई है।

पास में ही मुझे छोटे-छोटे मंदिर और घाट दिखाई दे रहे हैं।

जो कि वाइट कलर की है। ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है।

दीवार दिख रही है जोकि वाइट कलर की है। दिवार एक इसमें चेयर भी दिख रही है। चेयर के आगे --

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सारा समुन्द्र दिखाई दे रहा है।

टेबल्स के ऊपर टिशू पेपर भी पड़ा हुआ है। पास ही में एक छोटा-सा --

इनके आसपास मुझे लोहे के सलिए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे एक हेडपंप भी दिखाई दे रहा है हेडपंप के पास में --

अअअ ग्रीन कलर की एक बाल्टी पड़ी हुई है। पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। घरों के उपर लगे हुए हैं।

अअ ग्रीन कलर की बोटल पड़ी हुई दिख रही है। कुछ बनिया दिख रही हैं। जिसमे चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं।

इसमे मुझे व्हाइट कलर की कार दिख रही है और कुछ बाइक भी दिख रही है। जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

अअअ ब्राउन कलर का है। ऊपर की तरफ मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

गमलो के अंदर पौधों का कलर ग्रीन है और आसपास मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

उसमें मुझे सारे बच्चों ने टोपी पहनी हुवी है जोकि वाइट कलर की दिख रही है।

मंदिर के आस-पास मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

मुझे कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं। सामने की तरफ मुझे --

अअअ क्लास की दिवार जो ये येल्लो कलर की दिख रही है। इसमें काफी सारे चे टेबल्स लगी हुई है जो लकड़ी की है।

चिड़िया आती हुई दिख रही है। इसमें मुझे काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एक लेडी खड़ी हुवी है जिसने पिंक और वाइट कलर साड़ी पहनी हुवी है।

साइड में मुझे ठेले वाले दिखाई दे रहे हैं। ठेले पे आलू और प्याज रखे हुए हैं।